और आसमान उजले कलर के दिख रहे है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने मे लग रहे है।

और एक आदमी उजरा कलर का शर्ट पहना हुआ है और एक आदमी लाल कलर का शर्ट और काला कलर का गाड़ी और उजला कलर का पैंट रंग पहने हुए ।

यह एक बड़ा सा मकान है जिसमें पंद्रह सोलह या अनेक खिड़की लगे हुए हैं उसके बगल में एक टावर लगा हुआ है और दस पंद्रह मिस्त्री--

बालू खोद रहे है और बहुत ही ऊपर बिल्डिंग है।

यह एक एरोप्लेन है और यह प्लेटफार्म पे रुकी हुई है।

यहाँ पर एक आदमी योगा कर रहे है और रेड कलर के टी-शर्ट और उजले कलर के जूते और जीन्स पहन के बहुत ही अच्छी तरीके से योगा कर रहे है।